हमें यहाँ पर दरवाजा दिखाई दे रहे है हमें यहाँ पर एक छत भी दिखाई दे रहा है नीला आसमान दिखरा है --

हमे पानी दिखाई दे रहा है टंकी दिखाई दे रही है नीले कलर की है उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है पीले कलर-- हमें यहाँ पर एक गेट दिखाई दे रहा है खिड़किया दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक मकान दिखाई दे रहा है हमे बहुत सारे दरवाजे दिखाई दे रहे है हरे कलर की दीवार दिखाई दे रही है सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है लोग हमे दिखाई दे रहे है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है लाल झण्डा दिखाई दे रहा है।

हमे यहाँ पर दो स्टैचू दिख रहे है एक बोर्ड दिख रहा है पीले कलर का हमे यहा पर पहाड़ दिख रहै हैं हमे यहा पर पत्थर दिख रहै है हमे यहाँ पर--

हमे यहाँ पर हरी हरी घास दिख रही है हमे यहाँ पर नीला नीला आसमान भी दिख रहा है।

हमें यहाँ बहोत सारे पॉइंट दिख रहे है हमें नाम दिख रहा है यहाँ

हमे यहाँ पर एक स्टैचू दिख रहा हैं हमे यहाँ पर एक रोड दिख रही हैं हमे यहाँ पर सारी बहोत सारी घाँस दिख रही हैं हमे यहाँ पर सड़क भी दिख रही हैं हमे यहाँ पर लाइटिंग के खंबे दिख रहे हैं लाइटिंग के लैम्प दिख रहे हैं।

सफ़ेद सफ़ेद आसमान भी दिख रहा है पानी दिख रहा है ईंट दिख रही है पत्थर दिख रहे है पहाड़ दिख रहे है।

घर दिखाई दे रहा हैं जो पीले कलर अ हैं लाल कलर के हैं हमें यहाँ पर बहोत सारे कुए दिखाई दे रहे हैं जो पिले कलर के हैं लाल कलर के हैं।

हमे यहाँ पर एक मूर्ती दिख रही है हमे यहाँ पर पेड़ पौधे दिख रहे है बहुत सारे बलूनस दिख रहे है जो पीले कलर के है नीले के है हमे यहाँ पर लोग भी दिख रहे है।

हमे यहाँ पर एक मकान दिख रहा है व्हाइट कलर का रेड कलर का हमे यहाँ पर लाइटिंग दिख रही है हमे यहाँ पर काला आसमान दिख रहा है।

बहोत सारे टेंट दिख रहे है ब्लैक कलर के कुर्सियां दिख रही है ब्लैक कलर की बोर्ड दिख रहा है ब्लैक कलर का इनसाइड दिख रही है हमें यहाँ पर अ पाइप दिख रहे है ब्लैक कलर --